एक बहुत बड़ा पुल है जिसके नीचे बहोत सारी व्हाइट कलर की गायें हैं और इनको यहां पे इकट्ठा किया हुआ है यहां पे इसको बांधा--

और कलर प्रिंट और मोबाइल रिचार्ज जैसा यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर ये--

साथ ही यहां पे एक लैपटॉप है और पीने के लिए बोटल लैपटॉप और कुछ डाक्यूमेंट्स रखे हुए हैं।

और इसी के बीच में से एक गली गुजर रही है और यहां पर खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं।

यहाँ सड़क है जो तीनों तरफ से गुजर रही है।

यह एक बहुत बड़ा मंदिर है जिस परे वाइट कलर किया गया है और इसके साथ ही कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बातें कर रहे--

यह एक परचून की दुकान है जहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई है एक फ्रिज है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है।

यूपीआई का कोड लगाया गया है पेमेट के लिए है।

और यहाँ पर एक टोकरी पड़ी है पिंक कलर की।

और एक कार खड़ी हुई है और एक व्यक्ति है जो वहां से गुजर रहा है।

यह एक घर की छत है जिसके ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है।

और सामान बेचने के लिए दो लोग हैंजो यहाँ पे सामान बेच रहे--

और कुछ लेडीज और जेंट्स हैं जो यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं।

और दीवारें हैं जिन पर पेंट किया गया है और जिनको अच्छे से डिजाइन किया गया हैऔर इसके साथ ही एक नीम का पेड़ भी है।

यहाँ पर एक रास्ता गुजर रहा है जहाँ एक मेन गेट लगा हुआ है जो लोहे का है और इस पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह मिट्टी के बर्तन है जिसे बहुत सुंदर--

डिज़ाइन किया गया है और इनके ऊपर कुछ शेप बनाई गई है।

यह एक रेलवे स्टेशन है जहां पर एक व्यक्ति है वो गाड़ी का इंतजार कर रहा है।

और यहाँ पर कुछ कुत्ते भी बैठे हुए हैं।

और यहाँ एक बड़ा सा टेबल और बहुत सारी ब्लैक कलर की चेयर लगी हुई हैऔर इसके साथ ही एक सीनरी लगी हुई है।

यह एक सोफा है जिस पर कुछ तकिए रखे हुए हैं।

पर्दे लगे हुए हैंऔर एक ए_सी भी लगा है।

और बहुत ही सुंदर है जिनका डिजाइन भी बहुत सुंदर बनाया गया है।

और जो वाइट कलर की है जो बहुत सारी।

और यहाँ पर एक शॉप भी हैऔर कुछ लोग हैंजो यहाँ से गुजर रहे हैं और इसके साथ ही पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पत्थरों पर एक बहुत बड़ा स्टार बना हुआ है।